यह एक उद्यान है जोकि बहोत ही सुंदर लग रहा है। उद्यान की दीवार --

यह चारों तरफ से लोहे के पाइपों से घिरा है और ऊपर बड़ी-बड़ी लाइटें भी रखी हैं।

यह प्रथम माले पर स्थित है। यहां पर बाहर कुछ गाड़ियां और --

यह एक बस है जिसके यात्री खाना खाने के लिए एक ढ़ाबे में रुके हैं।

यह एक दोई मंजिला इमारत है। इसमें नीचे की तरफ एक भारतीय कंप्यूटर इंस्टिट्यूट टूट --

और एटीएम मशीन दो तरह की रखी हुई हैं जो एक पीले रंग की है और--